अलग-अलग कलर में दिख रही है और अलग-अलग कलर में भी अवेलेबल है।

मैकेनिक की शॉप है यहां पर फोर व्हीलर --

बॉल भी दिख रहे हैं और क अलग-अलग ब्लू कलर के कुछ दिख रहा --

यह एक कंप्यूटर की की छौप है

है इसमें बहुत से टेबल भी दिख रहे हैं एक आदमी भी दिख रहा है।

ये एक शिवम होटल है और इसमें ब एक बड़ी सी दुकान भी है और हरे भरे पेड़ हैं और उसमें झूले वगैरह--

ब्लैक कलर की है और ये बहुत बड़ी होटल है। शिवम होटल है और ऊपर मिस्त्री काम कर रहे हैं।

गो गोल सर्कल नो बना बना दिख रहा है इसमें--

एम_पी ऑनलाइन की शॉप दिख रही है इसमें एक आदमी भी दिख रहा है।

गेट वगैरह विंडो दिख रहे हैं और पेड हल्के हल्के पेड़--

ये एक बड़ा सा चर्च है चर्च में बहोत से लोग--

भारत गैस श्याम सिंह एजेंसी दिख रहा है एक खिड़की भी--

दिख रही है दो गेट भी दिख रहे हैं एक जाली--

एक पुजारी एक पंडित भी दिख रहे हैं बहोत से।

यह एक मेरिज हॉल दिख रहा है इतने--

इस इसमें बहोंत सी मशीनें दिख रही हैं जिम वगैरह कि अलग अलग मशीनें --

बादल भी छाए हुए दिख रहे हैं इसमें एक टावर भी दिख रहा है ऑरेंज कलर के बादल भी छाए हुए।--

ये एक बड़ा बंगलो है। बंगलो के आसपास हरि --

बहुत ही अच्छी स सुंदर है बहुत इसमें बहुत सारे नेकलेस भी रखे हुए हैं और--

चार रेंगे लगी हुई है और उसमें--

स्विमिंग पूल भी बहुत बड़ा है हरा भरा है।

ये ए ये एक नाई की शॉप है और इसमें बहोत सी क्रीमें भी रखी हुई है।